लाइटिंग लगी हुई है और मॉल का कलर रेड है और सामने एक पेड़ लगा हुआ है बहोत सारी पोस्टर लगी हुई है सीढ़ी लगी हुई है ब्लैक कलर की एक आदमी है जो जा रहा है मॉल में मेहरून कलर की शर्ट पेहने हुए --

एक मॉल है जिस पर कांच की रेलिंग लगी हुई है बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए है ग्रीन कलर के और पोस्टर लगा हुआ है रेड कलर का और काउंटर है।

रेड कलर की बोहत सारी चेयर डली हुई है और सामने से कुछ लाइटिंग आ रही है ऊपर से लाइटिंग आ रही है ब्लैक कलर की छत है।

एक चदर जिस पे ग्रीन कलर की मेटी बिछी है जमीन पर और कुछ टेबल कुर्सी रखी हुई है टेबल पर --

सामने शादी का गार्डन हैं जिस मे शादी हो रही हैं गार्डन हैं जिस पे रेड कलर की मिट चटाई बिछी हुई हैं और एक औरत हैं जो बाल्टी लेके जा रही हैं।

एक बहुत बड़ी खाई है जिसपे पानी बह रहा है नीचे और बहुत बड़े पत्थर लगाए हुआ है साइड से और कुछ पेड़ लगे हुए छोटे- छोटे बड़े बड़े और पीछे पहाड़ है बहुत बड़े बड़े --